इस छवि में एक खेत नजर आ रहा है।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

यह तस्वीर एक मैरिज हॉल की है।

ऊपर दिया गया चित्र में एक वाइट कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस छवि में गेट नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक गोदाम नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस छवि में एक घड़ी नजर आ रही है।

ये पिक्चर एक रास्ता का है।

इस चित्र में दो तीन बस नजर आ रहे हैं।

इस छवि में ऑटो दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक क्लब की है।

इस चित्र में एक कोरोना वायरस सेटिंग करने वाले आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक कांटेक्ट नंबर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक छोटी सी मूर्ति दिखाई दे रही है।

ये तस्वीर एक मंदिल की है।

इस चित्र में बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

ये तस्वीर एक लाइब्रेरी की है।

इस तस्वीर में बहौत सारे बुक्स दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में तीन लो तीन लोहा के बुक रखने वाले दिखाई दे रहे हैं।